यह हमारे प्रसिद अब्दुल कलाम जी का फोटो लगा हुआ है।

और डैश बोर्ड बहुत अच्छा अब और बड़ा भी है यहाँ पढ़ने में काफी मजा आयेगा --

ये महामंदिर है।